पिक्चर में दिखाए दे रही हैं।

लखानी मिष्ठान भंडार की है यहां पे एक आदमी काउंटर संभाल रहा है।

सिंहासन के पीछे सुनहरे रंग की बहुत सुंदर नकाशी की गई है यह सुंदर है।

आर_टी_ओ ऑफिस के बाहर हमें दुकाने और रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे हैं यहां वृक्षारोपण भी किया गया है।

दि गई तस्वीर एक पिंजरे में बंद--

आदि सारी चीज स्थित हैं यहां कॉपी और कलर भी दिखाई दे रहे हैं।

दी गई त तस्वीर हमें एक गैरेज की दिखाई दे रही है यहां पे --

रिपेयरिंग के लिए एक पुरानी गाड़ी खड़ी है और बहुत सारी--

दिए गई तस्वीर हमें मांसाहारी रेस्टोरोट की लग रही है।

यहां पे बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स के बैठने के व्यवस्था की गई है।

और रोशनी के लिए यहां छत पर बहोत सारे एल_इ_डी लाइट्स लगाई गई है।

और काले कलर की खिड़कियां बनाई गयी है मस्जिद को लाइटों से सजाया गया हुआ है।

सारे समान उपलब्ध है दुकान के बाहर पांच व्यक्ति खड़े हुए है।

यहां पे बहुत सारे चाइनीस फूड उपलब्ध हैं।

यहां पे जल दिखाई दे रहा हैं एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए एक रास्ता बनाया हुआ हैं।

घर के चारों तरफ एक दीवार बनाई गई है।